स्टेट बैंक शहर के रोड किनारे चारो तरफ पेड़ पौधा लगल छे से बैंक के ऑफिस --

जो सभी के लिए अच्छा है।

ई कोनो दुकान छै जै में ऑटो मोबाइल सुजाता ऑटो मोबाइल लिखल छे।

यह एक आर्मी ऑफिसर से हु यह देखने में लग्गे छे पुलिस नो विभाग छे उनो कोनो नेता गन--

और सूरज अस्त के फोटो भी बड़ा सुन्दर लग रहल छे देखें में।

और स्टेडियम में पानी पूरा लबालब छे।

ये यामाहा लिखल छे इंग्लिश में--